बाजरे के डोको से बना हुआ है उसके आगे एक टेबल भी रखी गई है जिसमें एक जग नमक दानी--

और यहां अलमारीयो में क्रीम और शैंपूस भी रखे गए हैं यहां पर अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है।

यहां पर तीन लोग खड़े हैं एक कुर्सी पर चढ़ रहा है एक नीचे बैठा है एक बच्चा भी खड़ा है यहां पे।

इस रूम में सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लगी हुई है जिसमें कुछ औरतें नृत्य करती दिखाई दे रही है कुछ औरतें घड़ा --

यहाँ पर एक लाल कलर की कार दिखाई गई हैं जिसका हिस्सा नीचे से काला किया गया हैं।

ब्लू कलर का गेट लगा हुआ है नीचे सीढ़ियां लगी हुई है और एक गाय भी खड़ी है पास में।

उसका एक पैर ऊपर उठाया हुआ है सामने की दीवार पर घड़ी लगाई गयी है पास मे एक बैग भी रखा गया है।

यहां पर एक टेबल पर एक कंप्यूटर दिखाया गया है जो ऑन है और उसमें कुछ दिखाई जा रहा है पीछे की साइड में एक आदमी खड़ा है।

यह एक चर्च क्या फोटो दिखाया गया है जिसमें आगे बहोत भीड़ हो रखी है।

यह एक हाथी की मूर्ति बनी हुई है यहां पे पानी और बना हुआ है यहां पे--

और होम दिखाया गया है जिसने एक आदमी दो पेन में से काम लिख रहा है उसके आगे एक बैग बोतल --

यहां पर एक लड़के के गले में ब्लूटूथ लगा हुआ है उसने --

यहां पर बीच में पानी का वोट बनाया गया है ऊपर लड़की लकड़ियों का पूल भी बनाया गया है।

यह एक आश्रम का फोटो दिखाया गया है जिसमें छोटे बड़े मंदिर बनाए गए हैं यहां पर झंडे भी लगे हुए हैं।

यहां पर दो नाव पड़ी है उसके ऊपर एक लड़का खड़ा है जिसने लाल चेक धारी का --

यहां पे आइसक्रीम और भी मिलती है और यहां फ्रिज वगैरा रखा हुआ है मैन्यू रखा हुआ है।